ये बिजली देता है और इलेक्ट्रिक वाला काम होता है। बहुत सुन्दर जगह है अच्छा लग रहा है।

पैंट पहना हुआ है अच्छा लग रहा है। बगल में घर है गेट है ऊपर आसमान दिख रहा है।

सकता है यह पूरा खन पुराना खंडहर हो सकता है। एक लड़का है जो पीला उम शर्ट पहना हुआ है जीन्स पहना है जूता पहना है सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जा रहा है।